ये देखिए एक ट्रक है। इसमें ये लोग कट्टे डाल रहे हैं। कुछ पीले कट्टे हैं। कुछ सफेद हैं। लाइट भी जल रही है। ऊपर से टीन पड़ा हुआ है। कार गाड़ी भी खड़ी है। साइड में डब्बे वब्बे भी पड़े हैं।

यह देखिए किसी का किसी की बिल्डिंग बन रही है | यहाँ पर तसले वस्ले पड़े हैं इंजीनियर है और काम करने वाले हैं | यहाँ पर टूटे हुए पत्थर रोड़े वगैरा भी पड़े हैं यह देखिए सरिये हैं पिलर बन रहे हैं ।

वहाँ पर भी बाइक का सामान रखा हुआ है। इसमे भी आधी बाइक बन चुकी है। इसमे सॉकर वॉकर वगैरह लग चुके हैं।

काफी चीज़े दी गयी है यहाँ पे देखिये चम्मच रखा है बिरयानी भी लोग खाके जाते हैं और बिरियानी बोहोत अच्छी मिलती है | यहाँ पे बोहोत चीज़े हैं | डाइनिंग टेबल काफी अच्छी लग रही है और यहाँ पे बोहोत चीज़े हैं |

बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर हर तरह की सब्जी मिलती हैं बोहत ही अच्छा ढाबा है यहाँ पर बिरयानी भी अच्छी मिलती है बोहोत ही अच्छा ढाबा है।